यहाँ हॉल में वाइट कलर है और यहाँ पर मुझे डोरी दिखाई दे रही है बोहोत सारी --

और एक लड़का खड़ा हुआ है उसने पुरे ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए है इसने ऑरेंज कलर की शर्ट पहनी--

हमने अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं किसी ने सूट साड़ी किसी ने पे --

यहां पर मुझे एक स्विमिंग पूल लग रहा है। ये ओ जहां पर मुझे पानी भरा हुआ--

यहाँ पर मुझे दुकान दिखाई दे रही है दुकान बहुत --

हम्म सामान से भरी हुई है यहाँ पर खान बनी हुई है खानों में सामन रखा हुआ है।

यहाँ पे कुछ पन्नियों में कुछ डिब्बे में रखे हुए हैं यहाँ पे पिंक यलो रेड ब्लू कलर के रखे हैं नीचे कैरेट में कुछ --

और यहाँ पर मुझे निचे पिंक ही रेड दिख रहा है निचे दो कार खड़ी हुई है।

वो कार मुझे एक ब्लैक एक वाइट दिख रही है ।

यहां पर मुझे टेक्टर दिखाई दे रहा है चार और ट्रैक्टर का कलर मुझे रेड दिख रहा--

यहां पर मुझे कुछ स्टूल टेबल सा दिखाई दे रा है। वो ब्राउन कलर का--

ऊपर मुझे बून ब्लैक कलर का दिख रहा है एक डोरी रखी हुई है ।

यहाँ पे मुझे कुर्सी भी दिखाई दे रही है बो --

यहाँ पर एक मस्जिद लग रही है वो पिंक व्हाईट कलर की लग रही है यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है वो भी व्हाईट कलर का है पिंक कलर का है।

एक घोड़ा है और उसके ऊपर एक लोग बैठा हुआ है तलवार हाथ में रखी हुई--

यहाँ पर रेड कलर की कुरशियाँ भी रखी हुई है और यहाँ पे ब्लू कलर का निचे का है।

फर्श और दीवाल है इसकी येल्लो कलर --

और ऊपर छत से का सिल्वर कलर की लाइट जल रही है ।

एक लेडिस बेठी हुई है ब्लैक कपड़े में उसने मास्क लगा रखा --

यहाँ पर लड़की के कुछ मुझे वगेरह दिख रहे है यहाँ पे रस्सी भी --

यहाँ पे एक कार है वो वाइट कलर की है ब्लैक कलर की उसके पीछे का है।

एक बोर्ड पे नंबर लिखे हुए हैं ब्लैक और वाइट कलर से --

यहाँ पर मुझे सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग का कलर मुझे व्हाईट लग रहा है इसमें खिड़कियाँ बहुत सारी दिखाई दे रही हैं।

पूरा क्रीम कलर का नीचे से पर्स लग रहा है ग्रीन कलर का उधर मैदान लग रहा है और सामने वो--

यहाँ पे पार्क है पार्क में मुझे क्रीम कलर दिखाई देरा है और यहाँ पर झूला है झूले--

सब्जियाँ लगी हुई दिख रही है और यहाँ पर मुझे आसमान भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे --

कुछ क्यारी बनी हुई हैं क्यारी में कुछ हरे हरे पौधे भी दिख रहे हैं पालक मेथी।

और कुछ और भी सामान लग रहा है और यहाँ पर पानी हो रहा है मिट्टी में और--

सिल्वर ब्लैक दिखाई दे रही है ब्राउन भी दिखाई दे रही है ।

और यहाँ पर पर्दे लग रहे हैं वो वाइट कलर के और--

व्हाइट कलर के और ऊंऊं गोल्डन कलर के हैं और जहां पर टेबिल रखा हुआ है वो चॉकलेटी कलर का है।

यहाँ पर मुझे मंदिर दिख रहा है मंदिर के ऊपर मुझे दरवज़्जा है ।

पेड़ है वो मुझे सिल्वर कलर का दिख रहा है और यहां पर मुझे नई नई डिजाइन का कुछ बना हुआ दिख रा--

यह मुझे एक दुकान दिख रही है दुकान में एक अलमारी है वो वाइट कलर की है उसमें--

और ऑरेंज से ब्लैक व्हाईट कलर की रखी हुई है और जहाँ पर कुछ सामन ऊपर पैकेट में रखा हुआ है।

और इधर सामान साबुन रखे हैं इधर बिस्किट वगैरा भी रखे हुए हैं।

ए यहाँ पर मेरून भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मुझे वाइट ओ पिंक --

और यहाँ पे मुझे ब्लैक कलर के कांच दिखाई दे रहे है ब्लू कलर की दो खीड़की दिखाई दे रही है।

वाइट कलर का कुछ रखा हुआ है बीच में इधर दोनों साइड कुछ दो --

डिब्बे हैं उसमें कुछ फूल फ्लावर वगेरह रखे हुए है वाइट कलर के हैं--

हैं रखा हुआ है और एक दोनों ने मांग से ल लगा रखा है जहाँ पर ग्रीन कलर की शॉप दिखाई दे रही है दीवाल ।

कुछ में ऑरे येलो ओर ग्रीन कलर का है और है जहाँ पर ब्राउन क्ल--

यहाँ पर मुझे वाइट कलर छत का दिखाई दे रहा है ओए यल्लो कलर दिवायर दीवाल का दिखाई दे रहा--